यहाँ सामने में कुछ स्टीमर लगे हुए हैं| यहाँ पे लोग तैरते नजर आ रहे हैं| यहाँ पर छोटे-छोटे टुकड़े पड़े हुए हैं कुछ लोग बैठे हुए नजर आ रहे हैं।